फोटो में एक बड़ी-सी नदी सामने की तरफ गिट्टी से बना हुआ रेती जैसा एरिया जिसमें काले रंग का बीच में पट्टे जैसा बना है पीछे की तरफ--

की जमीन हल्के पीले रंग की दिख रही है बड़े-बड़े हरे रंग के झाड़ दिख रहे है पास में सफेद कलर के तीन चार पिल्लरो के ऊपर लंबे-लंबे--

जो गुलाबी रंग का है पीछे बहुत सारे बक्से रखे हुए है नीचे भी कुछ समान रखा हुआ है एक रंगीन माला जैसा कुछ राउंड में टंगा हुआ है बीच में --

और ख़रगोश जैसी आकृति बनी है जबकी बगल में भी कुछ कागज़ रखे हुए हैं और उसके ऊपर भी ऐसी ही आकृति बनी हुई है।

तसवीर के अंदर दीवालो पर बहुत सारे काफी पुस्तके राखी हुई है। लकड़ी के रेक में सामने एक महिला ने चाय का कप लिया हुआ है। हाथ में और वह सामने देख रही हैं --

तस्वीर एक किराने की दुकान की है जिसमे एक व्यक्ति हाथ की बाहे कोहनी तक मोड़े हुए खड़े है इन्होंने सफ़ेद रंग का शर्ट पहना है ये हल्का सा --

तस्वीर में एक मंदिर जैसी आकृति को फूलों से सजाया गया है जिसमें गेंदे के पीले लाल और हल्के हरे रंग के फूल देखे --

तसवीर में एक कुतुबमीनार जैसी लंबी इमारत दिख रही है और यह रात का समय है इसमें हल्के गुलाबी और नीले रंग की पूरा कलर पोता हुआ है।

हाथ में मोबाइल लिए कुछ ध्यान से देख रहा है उनका एक हाथ दोनों पैरों के बीच में फसा है दूसरे हाथ में उन्होंने मोबाइल पकड़ रखा है।

तस्वीर में एक सफ़ेद रंग की बहोत बड़ी बिल्डिंग दिख रही है जो चार पाँच मंजिला है सामने की तरफ में एक पाइप सफ़ेद रंग का है जिसके ऊपर राष्ट्र ध्वज लगा हुआ है तिरंगा--

सारे पाइप दिख रहे है नीचे भी लम्बे - लम्बे बोहोत सारे पाइप आड़े और खड़े दिख रहे है --

ऊपर टिन शेड जैसा है पीछे खिड़कियों से सफेद रोशनी सामने की ओर आ रही है।

नीले रंग के और कुछ सफ़ेद रंग के डायरेक्ट टमाटर दिख रहै है टमाटरों के बीचे में कुछ काले धब्बे भी एक दो टमाटरों में दिख रहै हैं।

जो कर्रेंट का रंग है वो हल्का काला है जिसमे से पीछे नीले रंग की दीवाल दिख री--

का है। अंदर दीवालो का रंग नीला दिख रहा है। सामने एक बड़ा सा बोर्ड नीले रंग का लगा हुआ है।

एक सफेद रंग के शर्ट पहना व्यक्ति मोटरसाइकिल पर बैठा है पूरी बिल्डिंग सफेद है।

तस्वीर में बहोत सारी लम्बी लम्बी पीले कलर की बिल्डिंग दिख रही है पीछे एक सफ़ेद रंग की बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है जिसमे बहोत सारे खिड़िकयाँ जैसे खाने बने हुए है।

तस्वीर में एक काले रंग का जमीन दिख रहा है लम्बा-सा बगल में स्टील के रोड से बना डिवीडर है बीचे में काले रंग के बड़े-बड़े खम्भे दिख रहे है ऊपर का छत भी--

कुछ आकृति बनी है नीचे का फाउंडेशन सफेद रंग का है पास में एक लड़का नीला जींस सफेद शर्ट पेहने खड़ा हैं।